यूज़र लॉगिन और सेशन्स पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल पह्प के कुछ पहलुओं को बताता है जो ध्यान केंद्रित करेंगे कि एक एचटीएमएल फॉर्म को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है
तथा यूजरनेम और पासवर्ड के लिए चेक कैसे कर सकते हैं
एंटर की हुई वेल्यू डेटाबेस से चेक होगी
मैं आपको बताऊँगा कि अपने यूजरनेम और पासवर्ड के साथ डेटाबेस कैसे सेटअप करें
डेटबेस से कैसे जुड़ें और लॉगआउट फंक्शन की प्रक्रिया कैसे करें
क्योंकि हम सेशन्स का उपयोग कर रहे हैं
उपयोगकर्ता यूजर लॉगइन ही रहेगा जब तक कि वे लॉगआउट बटन प्रेस नहीं करते
शुरूआत में मैं एक एचटीएमएल फॉर्म बनाऊँगा
मैं आपको कुछ माइस्क्ल फीचर्स के बारे में बताऊँगा जिनको हम सेटअप करेंगे
अपने एचटीएमएल फॉर्म में हम लोगिन डॉट पह्प नामक पेज पर कार्य कर रहे हैं
इसको सरल करने के लिए हम अलग अलग पेज रखेंगे
हमारी पद्धति पोस्ट होने जा रही है
चलिए अपनी फॉर्म यहाँ समाप्त करते हैं
मैं अपना इनपुट टाइप बनाना शुरू करूँगा जो टेक्स्ट होगा और नेम यूजरनेम होगा
एक लाइन ब्रेक यहाँ
इस लाइन को कॉपी पेस्ट करें और टेक्स्ट को पासवर्ड में बदलें
और पासवर्ड कहते हैं
हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं उसके अनुसार ही यह स्टार या सर्कल्स के रूप में दिखाई देगा
और अन्ततः हम सबमिट बटन बनायेंगे और इसकी वेल्यू लॉग इन होगी
इसकी कोशिश करते हैं
रिफ्रेश करें और हमारे पास पेज यहाँ है
इंडेक्स डॉट पह्प यूजरनेम और पासवर्ड के साथ
मैं लॉगिन करूँगा और यह पेज पर जाता है
जो कि मौजूद नहीं है
अब चलिए इसको कुछ अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाते हैं और लेबल्स यहाँ टाइप करते हैं
रिफ्रेश करें और हम यहाँ हैं
अब अपनी लोगिन डॉट पह्प फाइल बनाते हैं
पहले मैं पह्प माय एडमिन ओपन करूँगा
यदि आप क्सैम्प का उपयोग कर रहे हैं
तो पह्प माय एडमिन के लिए लोकल हॉस्ट का उपयोग करके यह डिफॉल्ट रूप से संस्थापित होगा
यदि यह अभी भी संस्थापित नहीं हुआ है तो इसके लिए मैं आपको गूगल पर जाकर लोकल हॉस्ट डाइरेक्टरी पर कॉपी संस्थापित करके इसका उपयोग करने की सलाह दूँगा
अब हम नया डेटाबेस बनायेंगे
अतः यहाँ पह्प लोगिन नामक नया डेटाबेस बनायें और क्रिएट को क्लिक करें
हम देख सकते हैं यह यहाँ दिखाई दे रहा है और हम अब टेबल्स बना सकते हैं
यदि आप एसक्यूएल से परिचित नहीं हैं तो मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ
बुनियादी संरचना है डेटाबेस जो टेबल्स को संचित करता है और टेबल्स रोव्स को संचित करते हैं और रोव्स वेल्यू को संचित करते हैं
यूजर्स नाम दें और ओक पर क्लिक करें
एक एरर थे नंबर ओएफ fields
जब मैं नया डेटाबेस बनाता हूँ मैं नोटपेड या कॉन्टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ और सभी फील्ड्स को लिखता हूँ जिनका मैं उपयोग करूँगा
मैं शुरूआत के लिए इद फिर यूजर नामे और अंत में पासवर्ड का उपयोग करूँगा
फिलहाल हमें यह सब चाहिए
आपके प्रोग्राम की निर्भरता अनुसार हम फर्स्ट नामे डेट ओएफ बर्थ आदि भी जोड़ सकते हैं
लेकिन अभी के लिए हम इन 3 फील्ड्स का उपयोग इसे 3 फील्ड्स का टोटल बना रहे हैं
चलिए यहाँ वापस जाते हैं
अतः 3 फील्ड्स और वह पहले यह बनायेगा
अब हम फील्ड नेम्स में टाइप करके आगे बढ़ते हैं
हम इद टाइप करते हैं और हम इसे एक पूर्णांक बनायेंगे
यह प्राथमिक उपाय है और हम इसे auto increment बनाना चाहते हैं
अब प्रत्येक समय नये रिकार्ड जब बनती है इद वेल्यूस एक से बढ़त होगी
अतः उदाहरणस्वरूप पहला यूजर जो रजिस्टर करेगा उसकी इद एक होगी दूसरा यूजर जो रजिस्टर करेगा उसकी इद दो होगी इसी क्रम से आगे
अच्छा आगे यूजरनेम होगा और आखिरी पासवर्ड होगा
आगे हम उन्हें वर्चर्स के रूप में सेट करेंगे और मैं इसे 25 अक्षरों में सेट करूँगा और पासवर्ड को भी 25 अक्षरों में
यहाँ और कुछ नहीं है जिसे हमें इनके लिए सेट करने की आवश्यकता है
नीचे स्क्रोल करें और सेव पर क्लिक करें
अच्छा तो एक बार मैं यहाँ सेव कर देता हूँ तो हम नीचे आ सकते हैं और इसे यहाँ देख सकते हैं
और आप उनमें वेल्यू प्रविष्ट कर सकते हैं
हम इसे करेंगे क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं
यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनायें इस पर मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स बनायें हैं
हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं
इद की वेल्यू स्व वृद्धित होगी अतः हम कुछ भी नहीं डालते
यह एक होगा
यूजरनेम में मैं एलेक्स लिखूँगा
मेरा पासवर्ड एबीसी होगा
हालाँकि मैं आपको अच्छे पासवर्ड की सलाह दूँगा
अच्छा तो यूजरनेम एलेक्स है और पासवर्ड एबीसी है याद रखने के लिए आसान
यह संग्रहीत किया गया है
ब्राउज करने के लिए ब्राउज tab पर क्लिक करें
नीचे स्क्रोल करें
हमारे पास एलेक्स और एबीसी के रूप में यूजरनेम और पासवर्ड है
और इद पहले से ही 1 सेट की हुई है
अब हम लोगिन डॉट पह्प पेज बनायेंगे
इसे तुरंत सेव करें लोगिन डॉट पह्प
चलिए देखते हैं कि अपने पह्प टैग्स कैसे बनायें
अब मैं कुछ पोस्ट वेरिएबल्स पर विचार करूँगा
इंडेक्स डॉट पह्प में हमने पोस्ट के रूप में मेथोड का उपयोग किया
हम यूजरनेम डॉलर सिग्न अंडरस्कोर पोस्ट सेट करेंगे और वेरिएबल को रिनेम करेंगे जो यूजरनेम है
यह यहाँ मिला और पासवर्ड पोस्ट वेल्यू के समान होगा और और वह पासवर्ड होगा
सबसे पहले हम प्रविष्ट किये हुए यूजरनेम और पासवर्ड दोनों की जाँच करेंगे
हम फॉर्म को प्रमाणित करना शुरू नहीं करेंगे
यह करना अनावश्यक है क्योंकि यूजर ने इन दोनों फील्ड्स को प्रविष्ट कर दिया है
अब मैं मेरा इफ स्टेटमेंट टाइप करूँगा
यह एक बड़ा ब्लॉक होगा क्योंकि सभी कोड जो मुझे चेक के बाद चाहिए यह यहाँ पर चले जायेंगे
अतः मैं यहाँ इफ यूजरनेम लिखूँगा जिसका अर्थ है इफ यूजरनेम में यदि वेल्यू है
यह सही होगा और मैं पासवर्ड लिखूँगा
अतः इसको ट्रू करने के लिए और यहाँ कोड के इस ब्लॉक को निष्पादित करने के लिए इस यूजरनेम और पासवर्ड की आवश्यकता है
हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए160
हमें अपने डेटाबेस से जुड़ने की आवश्यकता है
यह करने के लिए हम कनेक्ट इक्वल टो mysql connect नामक वेरिएबल बनाते हैं
और इसके अंदर पहला पैरामीटर होस्ट होगा जो कि मेरे लिए लोकलहोस्ट है
दूसरा होगा यूजरनेम और मैं रूट का उपयोग करूँगा
तीसरा है पासवर्ड जो मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है
हम उस में चेक करेंगे
इसके बाद हम ओर डाइ लिख सकते हैं और एक एरर मेसेज देता है
अतः उदाहरणस्वरूप हम कोल्डेंट कनेक्ट लिख सकते हैं
मुझे मेरे पासवर्ड के बारे में यकीन नहीं है
मेरे ख्याल से यह कुछ और है
हम कुछ कोशिश करेंगे तो यह कहेगा कोल्डेंट कनेक्ट
अब हमें अपने टेबल चुनने की आवश्यकता है माफ कीजिए अपना डेटाबेस
हम माइस्क्ल सिलेक्ट दब् लिखेंगे जो अन्य built इन फंक्शन है जब आपके पास पह्प मॉड्यूल संस्थापित हो जाता है
यह क्सैम्प में भी आता है
यहाँ मैं दोहरे उद्धरण डालूँगा और फ्प्लोजिन लिखूँगा
अतः मान लीजिए कि सबकुछ ठीक है मैं अपना एरर मेसेज कोल्डेंट फाइंड दब् यहाँ जोड़ सकता हूँ
पेज रिफ्रेश करें
लोगिन पर क्लिक करें
कुछ नहीं हुआ
चलिए अपनी इफ स्टेटमेंट एडिट करते हैं और एल्से लिखते हैं एको या बेस्ट फंक्शन डाइ है
यहाँ यह इस प्वॉइंट के बाद से कुछ भी निष्पादित करना बंद कर देगा
और यह आपका पसंदीदा मेसेज भी पास करेगा
अतः यहाँ मैं लिखूँगा प्लीज enter आ यूजर नामे एंड आ पासवर्ड
इसे रिफ्रेश करें
डेटा रिसेंड करें और हमें यह एरर मेसेज मिलता है
आगे मैं एलेक्स और 123 टाइप करूँगा माफ कीजिए एबीसी और लोगिन पर क्लिक करूँगा
कोई भी एरर मेसेज नहीं है जिसका मतलब है हम डेटाबेस से जुड़ चुके हैं
यह इस भाग का अंत है
अगले में मैं बताऊँगा कि अपने डेटाबेस से कैसे जुड़ें और यूजरनेम और पासवर्ड के लिए चेक कैसे करें
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद